जिसमें बोहोत सारी कलर की सर्किट लगी हुई है।

इसके आगे एक बड़ा सा किला बना हुआ है। इसके आइट साइड भी छोटे-छोटे किले बने हुए हैं।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

इस इमेज में हमको एक नदी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है।

इस रास्ते के राइट साइड छोटे - छोटे पेड़ - पौधे भी लगे हुए हैं।

इस इमेज में हमको सामने चार-पाँच लोग दिख रहे हैं बाहर गाड़ी भी गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं।

ई इस इमेज में हमको चेयर पर बोहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।